दुकान बहुत साफ सुथरी लग रही है।

अंदर में एक आदमी बैठा हुआ है वो कुछ कर रहा है ।

साइड में इधर चेयर पे दो लोग बैठे हुए हैं।

यह एक फास्ट फूड का दुकान है ।

बगल में एक अंडा का ट्रे रखा हुआ है।

गाड़ी के पास एक आदमी खड़े हैं।

ए_टी_एम के बाहर एक बड़ा सा छाता लगा हुआ है।

और ऊपर में भी कुछ पोस्टर लगी हुई है।

यहां पे रोड पे बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

गले में बहोत सारे आदमी लाल लाल गमछे को भी डाले हुए है।

एक दो आदमी टिकट ले रहे हैं।

ऊपर में एक झंडा भी लगा हुआ है।

साइड मे एक आदमी और खड़ा है।

यह एक जिम सेंटर है।

और बहुत ही साफ सुथरा भवन है।

बगल में ये एक पूल है।

खिड़की के उस पर एक आदमी है।

नीचे में एक पीला कलर का बना हुआ है एक पीला कलर का चेयर भी रक्खा हुआ है।

कुछ बना हुआ है प्लेट में रखा हुआ है।

ऊपर डब्बा में कुछ चार्जर रखी है।

यहां पे काफी दूर तक पानी देखने को मिल रहा है।

वातावरण भी बहुत साफ सुथरा दिख रहा है।

यह एक मोबाइल का दुकान है।

दोनों कुछ बात कर रहे हैं।

यह एक रेल का पटरी है।

लाइट वाइट भी लगी हुई हैं।

बगल में एक बड़ा सा घर भी है।

एक आदमी ऊपर में खड़ा है।

और साइड में चोंगा लगा हुआ है।